और इसके अलावा हमे यहाँ पर आसमान भी दिखाया गया है आसमान मे हमे व्हाइट कलर दिखाया जा रहा--

इस इमेज मे हमे यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई गयी है। बिल्डिंग में हमे यहाँ पे कुछ डेकोरेशन भी दिखाये गए है।

और एक झरना दिखाई दे रहा है झरने मे अभी पानी है और बड़े-बड़े से पेड़ दिखाई--

और ऐसी सारी लाइट्स लगाई गई है और व्हाइट कलर की लाइट भी लगाई गई है।